इमेंज में एक बड़ा सा लोहे का गेट है जिसके राइट साइड फ्लावर के डिजाइन है बीच में जाली की डिजाइन है।

मेले का दृश्य शो रहा है जिसमें साइड दुकाने हैं।

उम्म जो म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं और कैमरा सेटअप लगा हुआ है लाइटिंग लगी हुई है मरक्युरी लगी हुई है।

इमेज में एक व्यक्ति एक महिला को एक चाबी दे रहा है। वो एक बड़ी सी चाबी के साथ फोटो खिंचवा रहे है। पीछे बैटरी रिक्शा खड़ा हुआ है। उसके नीचे ऊपर रेड कलर का एक बड़ा सा गेट बना हुआ है।

ऊपर नेट की डिजाइन का पंडाल बना हुआ है पीछे पैनल बहुत सुंदर बना हुआ है।

इसमें सफेद पिंक ब्लू कलर के मैप लगी हुई है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो बोर्ड पे कुछ लिख रहा है और एक ल ट्यूबलाइट लगी हुई है।

एक जिम का इमेज दिख रहा है इसमें बोर्ड लगा हुआ है बेनर लगा हुआ है एक वर्कआउट करता ब् बच्चा दिख रहा है एक बच्चा जाते दिख हुए --

कंट्रक्शन का वर्क चल रहा है। इसमें एक छत पे गिट्टी माल किया जा रहा है पीछे बहुत सारा --

कुछ मजदूर देख के काम का जायजा ले रहे हैं बिछे हुए हैं।